यह एक बेहद ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य है। मेरे ख्याल से यह संजा बेह यह संजा बेला की अ क्लिक की हुई पिक्चर है जिसमें खुला मैदान है।

यह एक सजावट से भरा हुआ कमरा नज़र जान पड़ता है।

किसी पर्यटन स्थल का पिक्चर नजर आ रहा है जिसमें बुद्ध जी का बहुत बड़ा मूर्ति स्थापित नजर आ रही है और सुंदर गेट लगा हुआ है।

यह किसी दुकान का पिक्चर जान पड़ता है। जिस दुकान के ऊपर लिखा है उस दुकान के ऊपर लिखा है चिल्ड्रन बुक्स --

यह डी मार्ट या किसी मॉल का दृश्य नजर जान पड़ता है जहां काफी सारे जनरल स्टोर में पाए जाने वाले सामान यहां नजर आ रहे हैं।

व कमरे के अंदर का दृश्य है जिसमें सिंगारदानी लगी हुई है या हम ड्रेसिंग टेबल कह सकते हैं जोकि क्रीम और ब्लैकिश कलर में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है।

यकिनन यह भी जिम में लिया गया पिक ही है। जिसमे तीन व्यक्ति नजर आ रहे हैं। सामने वाले के हाथ में मोबाइल है और दो लोग पीछे खड़े हुए देख रहे हैं।